और यहाँ पर कुछ सजावट हुई है मंदिर की और कुछ लोग हैं जो पंडाल में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मम कुछ यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ कुर्सियों पर भी बैठे हुए हैं ।

सब्जियों के भी हर तरीके के पेड़ पेड़ है और ये छोटे पेड़ भी है बड़े भी पेड़ है बहुत सारे और ऊपर को हरे रंग की इसमें टीन सेट पड़ा हुआ है ।

कुछ लोग खड़े हुए हैं यहां पर पर्दे भी हैं और यहां पर अ बहोत सारा सामान रखा हुआ है और कुछ लोग जो हैं इधर उधर खड़े हुए हैं और इधर की तरफ भी बहोत सामान--

सिनेमा जो है लगा हुआ है सिनेमा का पोस्टर लगा है ।

और यहाँ पॉपकॉर्न की दुकान है और यहाँ प बहुत सारे थंब लगे हुए हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे जाने के लिए रास्ता ये सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे यहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई है साई --

और वहाँ पे कुछ पत्थर और मट्टी पड़ी हुई है और दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं और दूसरी तरफ भी बहुत नदी है और वहाँ भी पानी बह रहा है ।

और सामने की तरफ बहुत सारे ए पहाड़ हैं और यहाँ पर जो मट्टी पड़ी हुई है पत्थर पड़े हैं ।

वो पीले कलर के और लाल कलर के द दिखाई दे रहे हैं और उधर से रोशनी पड़ रही है वो साफ-साफ-- --

यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है घर है और ये सब बिल्डिंग है और ये सरकारी कुछ है यहां पर कुछ लिखा है और यहां पे कुछ कारे खड़ी है बाइक खड़ी है स्कूटी खड़ी हुई है।

और यहाँ पर कुछ आदमी हैं कुछ खड़े हैं कुछ सीढ़ियों पर लोग बैठे हुए हैं ।

यहाँ पर रोड है और ये स किनारे से बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर जो है बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं और साइकिलें भी खड़ी हैं ।

लड़कियाँ बैठे हुए हैं और जो टीचर है वो बोर्ड पर कुछ लिखकर समझा रहे हैं ।

और ऊपर की तरफ पंखा है और लाइट चल रही है सामने की तरफ और इधर की तरफ पोस्टर लगा हुआ है और उधर उधर भी दो-तीन पंखे लगे हुए हैं।

अं बैग टांग रखा है और एक सफेद रंग का यहां पर ट्रक भी जा रहा है साथ में और बहोत सारी अं यहां से बाईकें निकल रही--

यहाँ पर एक गैराज है और यहाँ पर गाड़ियाँ सही होती हैं ।

ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो है झोपड़ी टाइप की बना रखी है और उसके अंदर मेज और कुर्सी लगा रखी है।

बहुत सारे लोग हैं जो उसमें उं बैठ के कुछ खा रहे हैं खाना खा रहे हैं और एक आदमी है जो अंदर की तरफ जा रहा है।

और इसमें रास्ता बना रखा है दोनों तरफ और ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो है टीन भी पड़ी हुई है लाइटो वाइल टीन लगी हुई है।

ये यहाँ पर टंकियों के सेट लगे हुए हैं जो वॉशवेशन में टंकी लगती हैं हाथ धोने के लिए लगती है।

और यहाँ एक स्टूल रखा दो-तीन स्टूल भी रखे हुए हैं और बाहर की तरफ ये रैक है उसमें सामान रखा है और यहाँ कुछ मालाएं टंगी हुई हैं।

और इसमें कुछ डिब्बे लोहे के भी हैं और कुछ उसके कार्टून के भी हैं।

ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ पर बहुत सारी क्रेटें पड़ी हुई हैं और ये जो है सेंकने के लिए जो।

और बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं यहाँ पर आग लगी है तो कुछ पेड़ जल गए हैं।

और वो वहाँ पर सफाई कर रहा है और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा स्क्रैच पड़ा हुआ है और ये गाड़ी बहुत ज्यादा टूटी हुई है।

ये दुकान है ऊपर की तरफ भी बहुत दुकान वो दुकान है और वहाँ बहुत सारा सामान है।

यहाँ पर जिम करने की मशीनें रखी हुई है ये जिम सेंटर है और अंदर की तरफ भी बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं।

और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ बांस के वो लगा रखे हैं और पल्ली डाल रखी है और ऊपर से जो है यहाँ पर टीन लगी है और बहुत सारे इसमें पेड़ पेड़ लगे हुए हैं।

ये ये एक ऑफिस है और यहाँ पर बहुत सारे केबिन बने हुए हैं और सब सारे केबिनों पर कंप्यूटर रखे हैं और चेयर पड़ी हुई हैं फाइलें रखी हुई हैं यहाँ बहुत सारी--

एक अस्पताल है और यहां पे जो है ये एक ऑपरेशन थियेटर है और यहां पे एक बेड सा बना पड़ा तकिया रखा है उसके ऊपर यहां पे बहोत सारी मशीनें --

डिब्बे भी रखे हैं और यहाँ पर एक स्टूल है ऊंचा वाला जो वहाँ ऊपर से कुछ उतारने के लिए है और यहाँ बहुत सारे डिब्बे हैं।

एक मंदिर है और ये शायद किसी गुफा की तरह पत्थरों का बना हुआ है और यहाँ पर नारंगी रंग से हनुमान जी को--

लगाया गया है और यहाँ पर एक दान पेटी भी है एक पाइप जा रहा है यहाँ पेड़ भी है और ये गुफा के अंदर ही--

कोई पत्थरों की गुफा है उसके अंदर मंदिर बनाया गया है उसके ऊपर जो है पल्ली डाली हुई है।

यह एक कॉस्मेटिक की दुकान है और यहाँ पर बहुत सारी चूड़ी हैं और मंगलसूत्र चैनें हैं कुंडल रबड़बैंड क्लिप।

सामान देख रही है और यहाँ पर एक आदमी है जो बता रहा है सब यह चिमटी है क्लिप बहुत सारी चीजें डलिया भी रखी हुई हैं।

हर पहाड़ पर मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ और नीचे की तरफ यहाँ पर बहुत सारा खाई है और ऐसा लग रहा है सड़क पर खड़े होकर किसी ने फोटो खींचा।